सामने कुछ में पेड़ दिख रहा है इधर पे रोज बहोत से लोग आती है।

इस दुकान में रोज बोहोत भीड़ होता हे।

चार पास बोहोत सारे पेड़ दिख रहा है।

दुकान की अलमारी में बहोत सारी मिठाई है दही है जिलाबी भी है।

ए.टी.एम. के बाहर कुछ लोग खड़ा है कुछ बाइक दिख रहा है।

बिल्डिंग में बहुत सीढ़ी भी दिख रहा है इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं।

इधर पे बहोत सारे लोग बहोत सारे महिला चल कर जा रहा है।

पहाड़ की पास एक लोग खड़ा है उस लोक पानी पी रहा है।

एक महिला जा रहा है सामने एक बेंच दिख रहा है।

कुछ लोग मोबाइल से फोटो खींच रहा है।

इधर पे एक ऑफिस दिख रहा है ऑफिस में छोटा-छोटा कैबिन है कैबिन के पास कुछ चेयर भी दिख रहा है।

दो लड़का खड़ा है दुकान के अंदर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी है दो चीयर दिख रहा है।

इधर पेड़ ओज बोहोत सारे लोग घूमने आती है।

सीलिंग में एक फैन दिख रहा है इधर पे रोज बहुत सारी लड़की बहुत सारे लड़का --

पेड़ है सामने एक पेड़ मे पिंक कलर के फ्लावर दिख रहा है।

बोर्ड मे कॉमर्स लिखा हुआ है एक पेड़ का पिक्चर भी दिख रहा है।

इधर पे एक डांस एकेडमी है एकेडमी बहुत बड़ा है।

सीलिंग में एक बड़ा-सा फैन भी दिख रहा है।

इधर एक ए.टी.एम. है ए.टी.एम. के अंदर एक लोग है।

जलाशय की सामने एक मम लेड़की खड़ा है।

साइकिल में एक बस्ता दिख रहा है एक बाइक भी खड़ा है।

स्कूल के सामने एक बड़ा-सा पेड़ की डाल दिख रहा है।

बिल्डिंग के चार पांच बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है सामने कुछ छोटा-छोटा पेड़ भी है टब मे कुछ पेड़ भी है।

फ्लोर मे दो चियर दिख रहा है।

इधर पे एक नर्सरी है नर्सरी बहुत सुन्दर है बहुत सारे पेड़ दिख रहा हैं।

इधर एक ईंट का हाउस दिख रहा है हाउस की सामने एक बाल्टी है।

ट्रेन के विंडो से बाहर दिख रहा है बाहर में एक प्लेटफार्म है।

आसपास में बहुत सारे पेड़ है एक बड़ा सा लैंप-पोस्ट भी दिख रहा है।